यह एक कपड़ों का शोरूम है जिसमें सामने एक लड़का टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

और लड़कियों के अच्छे अच्छे गाउन टंगे हुए हैं।

यह एक कपड़ों का शोरूम है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर कुछ लड़के हैं।

यह एक खेत है जिसमें एलोवेरा उगाया गया है।

दीवार पर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर प्लंबर का नाम लिखा हुआ और कार्य लिखा हुआ है।

यह एक फिटनेस ऑफिशियल है।

यह एक चर्च है जिसमें बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं।

और सामने ही प्लस का निशान है।

और सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है।

यह एक फिटनेस ऑफिशियल है जिसमें लड़के जिम करते हैं जिम का बहुत सारा सामान है।

गमले हैं गमले के पास दो ईंटें रखी हुई हैं।